सामने एक खेत है उसमे कुछ पानी डाला हुआ है एक लेजहम डाली हुई है जोकी पीले कलर की है एक घास का एक बड़ा लगा हुआ है कुछ बगल मे--

दो मूर्ति है जोकि सफेद कलर की है एक मूर्ति की गोद में एक और मूर्ति बैठी हुई है सामने कुछ फूल रखे है जोकि लाल कलर के हैं।

हमे एक ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज क ऊपर सफेद कलर की रेलिंगे लगी हुई है नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

गाड़ी है जो सफेद कलर की है और कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं और एक तार डाले हुए है। कुछ--